एक ठो एक ठो दुकान लगाया है गमला का उसकों--

तीन ठो आदमी है एक ठो लेडिस जैसे दिख रहे हैं ऑरेंज कलर का कपड़ा पहने हैं पैंट शर्ट --

चेक करने वाला रखा हैं और कुछ ठे सॅनिटायझर रखा हुआ हैं।

अं पेट्रोल टैंक है उसमें दो तरफ टंकी रखा हुआ है और सामना में इंटा जैसे दिखाई दे रहा है।

बस स्टैंड है बस स्टैंड का पास में कितना सारा लोग खड़े हुए हैं कोई चढ़ रहा है कोई जा रहा है।

मार्केट दिखाई दे रहा है इस मार्केट में सब्जी वाला औरत बैठे हैं एक औरत मास्क लगा के जा रही है।

यहां पर एक तो किराना दुकान नहीं चाय रोहन चाय सेंटर दुकान लगाया हुआ हैं।

तेल शैंपू साबुन पान पुड़िया टंगा हुआ है। ऊपर में नीला हरा कलर दिखाई दे रहा है।

अं ये समुद्र जैसा दिख रहा है पानी है वहां पर एक ठो--

कितना सारा रेड कलर भी दिखाई दे रहा है और नीला कलर भी।

एक ठो अलमारी है उसमें बच्चों का खिलौना रखा है बहोत सारा--

और मेडिसन का भी दुकान दिखाई दे रहा है मेडिकल --

अह पानी में नाव चल रहा है बड़ा सा नदी है।